यह एक रोड है रोड पर एक भैस बैठी हुई है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है मूर्ति है उसका सामने में इधर-गिधर पूरा घेरा हुआ है रोड पूरा क्लीन है उसके ऊपर --

यह ड्राइंग रूम है जिसके ऊपर बहुत सारे ड्राइंग बने हुए है यहाँ पे एक बोर्ड बिजली बोर्ड लगा हुआ है ये कलर पूरा कलर यहाँ पे खिड़की है यहाँ पे दो चेयर है।